यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली मार्केट दिखाई दे रहा है| यहाँ पर बड़ी-बड़ी और छोटी मछलियाँ मिलती हैं।

यहां पर ऊंची-ऊंची इमारतें बनी हुई है।

मंदिर में फूल लगे हुए है मंदिर में सफेद पीले नीले लाल फूल लगे हुए है मंदिर के पीछे लाल कपड़ा चढ़ा हुआ हैं।